मेरे प्यारे देशवासियो नमस्कार
फिर एक बार मुझे मन की बात करने का अवसर मिला है
मेरे लिए मन की बात ये कर्मकाण्ड नहीं है
मैं स्वयं भी आपसे बातचीत करने के लिए बहुत ही उत्सुक रहता हूँ और मुझे खुशी है कि हिन्दुस्तान के हर कोने में मन की बातों के माध्यम से देश के सामान्यजनों से मैं जुड़ पाता हूँ
मैं आकाशवाणी का भी इसलिए भी आभारी हूँ कि उन्होंने इस मन की बात को शाम को 800 बजे प्रादेशिक भाषाओं में प्रस्तुत करने का सफल प्रयास किया है
और मुझे इस बात की भी खुशी है कि जो लोग मुझे सुनते हैं वे बाद में पत्र के द्वारा टेलीफोन के द्वारा माइगोव वेबसाइट के द्वारा नरेंद्र मोदी अप्प के द्वारा अपनी भावनाओं को मेरे तक पहुंचाते हैं
बहुत सी आपकी बातें मुझे सरकार के काम में मदद करती हैं
जनहित की दृष्टि से सरकार कितनी सक्रिय होनी चाहिए जनहित के काम कितने प्राथमिक होने चाहिए इन बातों के लिए आपके साथ का मेरा ये सम्वाद ये नाता बहुत काम आता है
मैं आशा करता हूँ कि आप और अधिक सक्रिय हो करके लोकभागीदारी से लोकतंत्र कैसे चले इसको जरूर बल देंगे
गर्मी बढ़ती ही चली जा रही है
आशा करते थे कुछ कमी आयेगी लेकिन अनुभव आया कि गर्मी बढ़ती ही जा रही है
बीच में ये भी ख़बर आ गयी कि शायद मानसून एक सप्ताह विलम्ब कर जाएगा तो चिंता और बढ़ गयी
क़रीबक़रीब देश का अधिकतम हिस्सा गर्मी की भीषण आग का अनुभव कर रहा है
पारा आसमान को छू रहा है
पशु हो पक्षी हो इंसान हो हर कोई परेशान है
पर्यावरण के कारण ही तो ये समस्याएँ बढ़ती चली जा रही हैं
जंगल कम होते गए पेड़ कटते गए और एक प्रकार से मानवजाति ने ही प्रकृति का विनाश करके स्वयं के विनाश का मार्ग प्रशस्त कर दिया
5 जून विश्व पर्यावरण दिवस है
पूरे विश्व में पर्यावरण के लिए चर्चाएँ होती हैं चिंता होती है
इस बार यूनाइटेड नेशंस ने विश्व पर्यावरण दिवस पर ज़ेरो टॉलरेंस फोर इल्लेगल वाइल्डलाइफ ट्रेड इसको विषय रखा है
इसकी तो चर्चा होगी ही होगी लेकिन हमें तो पेड़पौधों की भी चर्चा करनी है पानी की भी चर्चा करनी है हमारे जंगल कैसे बढ़ें
क्योंकि आपने देखा होगा पिछले दिनों उत्तराखण्ड हिमाचल जम्मूकश्मीर हिमालय की गोद में जंगलों में जो आग लगी आग का मूल कारण ये ही था कि सूखे पत्ते और कहीं थोड़ी सी भी लापरवाही बरती जाए तो बहुत बड़ी आग में फैल जाती है और इसलिए जंगलों को बचाना पानी को बचाना ये हम सबका दायित्व बन जाता है
पिछले दिनों मुझे जिन राज्यों में अधिक सूखे की स्थिति है ऐसे 11 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ विस्तार से बातचीत करने का अवसर मिला
उत्तर प्रदेश राजस्थान गुजरात महाराष्ट्र मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ झारखंड कर्नाटक आंध्र प्रदेश तेलंगाना ओडिशा वैसे तो सरकार की जैसे परम्परा रही है मैं सभी सूखा प्रभावित राज्यों की एक मीटिंग कर सकता था लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया
मैंने हर राज्य के साथ अलग मीटिंग की
एकएक राज्य के साथ क़रीबक़रीब दोदो ढाईढाई घंटे बिताए
राज्यों को क्या कहना है उनको बारीकी से सुना
आम तौर पर सरकार में भारत सरकार से कितने पैसे गए और कितनों का खर्च हुआ इससे ज्यादा बारीकी से बात नहीं होती है
हमारे भारत सरकार के भी अधिकारियों के लिए भी आश्चर्य था कि कई राज्यों ने बहुत ही उत्तम प्रयास किये हैं पानी के संबंध में पर्यावरण के संबंध में सूखे की स्थिति को निपटने के लिये पशुओं के लिये असरग्रस्त मानवों के लिये और एक प्रकार से पूरे देश के हर कोने में किसी भी दल की सरकार क्यों न हो ये अनुभव आया कि इस समस्या की लम्बी अवधि की परिस्थिति से निपटने के लिए परमेनेंट सोल्यूशंस क्या हों कायमी उपचार क्या हो उस पर भी ध्यान था
एक प्रकार से मेरे लिए वो लर्निंग एक्सपीरियंस भी था और मैंने तो मेरे नीति आयोग को कहा है कि जो बेस्ट प्रैक्टिस हैं उनको सभी राज्यों में कैसे लिया जाए उस पर भी कोई काम होना चाहिए
कुछ राज्यों ने खास करके आन्ध्र ने गुजरात ने टेक्नोलॉजी का भरपूर उपयोग किया है
मैं चाहूँगा कि आगे नीति आयोग के द्वारा राज्यों के जो विशेष सफल प्रयास हैं उसको हम और राज्यों में भी पहुँचाएँ
ऐसी समस्याओं के समाधान में जनभागीदारी एक बहुत बड़ा सफलता का आधार होती है
और उसमें अगर परफेक्ट प्लानिंग हो उचित टेक्नोलॉजी का उपयोग हो और समयसीमा में व्यवस्थाओं को पूर्ण करने का प्रयास किया जाए उत्तम परिणाम मिल सकते हैं ऐसा मेरा विश्वास है
ड्राउट मैनेजमेंट को ले करके वाटर कंजर्वेशन को ले करके बूँदबूँद पानी बचाने के लिये क्योंकि मैं हमेशा मानता हूँ पानी ये परमात्मा का प्रसाद है
जैसे हम मंदिर में जाते हैं कोई प्रसाद दे और थोड़ा सा भी प्रसाद गिर जाता है तो मन में क्षोभ होता है
उसको उठा लेते हैं और पाँच बार परमात्मा से माफी माँगते हैं
ये पानी भी परमात्मा का प्रसाद है
एक बूँद भी बर्बाद हो तो हमें पीड़ा होनी चाहिए
और इसलिए जलसंचय का भी उतना ही महत्व है जलसंरक्षण का भी उतना ही महत्व है जलसिंचन का भी उतना ही महत्व है और इसीलिये तो पेर ड्रॉपमोर क्रॉप माइक्रोइरिगेशन कमसेकम पानी से होने वाली फसल
अब तो खुशी की बात है कि कई राज्यों में हमारे गन्ने के किसान भी माइक्रोइरिगेशन का उपयोग कर रहे हैं कोई ड्रिपिरिगेशन का उपयोग कर रहा है कोई स्प्रिंकलर का कर रहा है
मैं राज्यों के साथ बैठा तो कुछ राज्यों ने पैडी के लिए भी राइस की जो खेती करते हैं उन्होंने भी सफलतापूर्वक ड्रिपिरिगेशन का प्रयोग किया है और उसके कारण उनकी पैदावार भी ज्यादा हुई पानी भी बचा और मजदूरी भी कम हुई
इन राज्यों से मैंने जब सुना तो बहुत से राज्य ऐसे हैं कि जिन्होंने बहुत बड़ेबड़े टार्गेट लिए हैं खास करके महाराष्ट्र आन्ध्र और गुजरात
तीन राज्यों ने ड्रिपिरिगेशन में बहुत बड़ा काम किया है और उनकी तो कोशिश है कि हर वर्ष दोदो तीनतीन लाख हेक्टेयर माइक्रोइरिगेशन में जुड़ते जाएँ ये अभियान अगर सभी राज्यों में चल पड़ा तो खेती को भी बहुत लाभ होगा पानी का भी संचय होगा
हमारे तेलंगाना के भाइयों ने मिशन भागीरथी के द्वारा गोदावरी और कृष्णा नदी के पानी का बहुत ही उत्तम उपयोग करने का प्रयास किया है
आन्ध्र प्रदेश ने नीरू प्रगति मिशन उसमें भी टेक्नोलॉजी का उपयोग ग्राउंड वाटर रिचार्जिंग का प्रयास
महाराष्ट्र ने जो जनआंदोलन खड़ा किया है उसमें लोग पसीना भी बहा रहे हैं पैसे भी दे रहे हैं
जलयुक्त शिविर अभियान सचमुच में ये आन्दोलन महाराष्ट्र को भविष्य के संकट से बचाने के लिए बहुत काम आएगा ऐसा मैं अनुभव करता हूँ
छत्तीसगढ़ ने लोकसुराज जलसुराज अभियान चलाया है
मध्य प्रदेश ने बलराम तालाब योजना क़रीबक़रीब 22 हज़ार तालाब ये छोटे आँकड़े नही हैं इस पर काम चल रहा है
उनका कपिलधारा कूप योजना
उत्तर प्रदेश से मुख्यमंत्री जल बचाओ अभियान
कर्नाटक में कल्याणी योजना के रूप में कुओं को फिर से जीवित करने की दिशा में काम आरम्भ किया है
राजस्थान और गुजरात जहाँ अधिक पुराने जमाने की बावड़ियाँ हैं उनको जलमंदिर के रूप में पुनर्जीवित करने का एक बड़ा अभियान चलाया है
राजस्थान ने मुख्यमंत्री जलस्वावलंबन अभियान चलाया है
झारखंड वैसे तो जंगली इलाका है लेकिन कुछ इलाके हैं जहाँ पानी की दिक्कत है
उन्होंने चेक दम का बहुत बड़ा अभियान चलाया है
उन्होंने पानी रोकने की दिशा में प्रयास चलाया है
कुछ राज्यों ने नदियों में ही छोटेछोटे बाँध बना करके दसदस बीसबीस किलोमीटर पानी रोकने की दिशा में अभियान चलाया है
ये बहुत ही सुखद अनुभव है
मैं देशवासियों को भी कहता हूँ कि ये जून जुलाई अगस्त सितम्बर हम तय करें पानी की एक बूँद भी बर्बाद नहीं होने देंगे
अभी से प्रबंध करें पानी बचाने की जगह क्या हो सकती है पानी रोकने की जगह क्या हो सकती है
ईश्वर तो हमारी ज़रूरत के हिसाब से पानी देता ही है प्रकृति हमारी आवश्यकता की पूर्ति करती ही है लेकिन हम अगर बहुत पानी देख करके बेपरवाह हो जाएँ और जब पानी का मौसम समाप्त हो जाए तो बिना पानी परेशान रहें ये कैसे चल सकता है और ये कोई पानी मतलब सिर्फ किसानों का विषय नहीं है जी ये गाँव ग़रीब मजदूर किसान शहरी ग्रामीण अमीरग़रीब हर किसी से जुड़ा हुआ विषय है और इसलिए बारिश का मौसम आ रहा है तो पानी ये हमारी प्राथमिकता रहे और इस बार जब हम दीवाली मनाएँ तो इस बात का आनंद भी लें कि हमने कितना पानी बचाया कितना पानी रोका
आप देखिये हमारी खुशियाँ अनेक गुना बढ़ जाएँगी
पानी में वो ताक़त है हम कितने ही थक करके आए हों मुँह पर थोड़ासा भी पानी छिड़कते हैं तो कितने फ्रेश हो जाते हैं
हम कितने ही थक गए हों लेकिन विशाल सरोवर देखें या सागर का पानी देखें तो कैसी विराटता का अनुभव होता है
ये कैसा अनमोल खजाना है परमात्मा का दिया हुआ जरा मन से उसके साथ जुड़ जाएँ उसका संरक्षण करें पानी का संवर्द्धन करें जलसंचय भी करें जलसिंचन को भी आधुनिक बनाएँ
इस बात को मैं आज बड़े आग्रह से कह रहा हूँ
ये मौसम जाने नहीं देना है
आने वाले चार महीने बूँदबूँद पानी के लिए जल बचाओ अभियान के रूप में परिवर्तित करना है और ये सिर्फ सरकारों का नहीं राजनेताओं का नहीं ये जनसामान्य का काम है
मीडिया ने पिछले दिनों पानी की मुसीबत का विस्तार से वृत्तांत दिया
मैं आशा करता हूँ कि मीडिया पानी बचाने की दिशा में लोगों का मार्गदर्शन करे अभियान चलाए और पानी के संकट से हमेशा की मुक्ति के लिए मीडिया भी भागीदार बने मैं उनको भी निमंत्रित करता हूँ
मेरे प्यारे देशवासियो हमें आधुनिक भारत बनाना है
हमें ट्रांसपेरेंट भारत बनाना है
हमें बहुत सी व्यवस्थाओं को भारत के एक कोने से दूसरे कोने तक समान रूप से पहुँचाना है तो हमारी पुरानी आदतों को भी थोड़ा बदलना पड़ेगा
आज मैं एक ऐसे विषय पर स्पर्श करना चाहता हूँ जिस पर अगर आप मेरी मदद करें तो हम उस दिशा में सफलतापूर्वक आगे बढ़ सकते हैं
हम सबको मालूम है हमें स्कूल में पढ़ाया जाता था कि एक ज़माना था जब सिक्के भी नहीं थे नोट भी नहीं थे बार्टर सिस्टम हुआ करता था कि आपको अगर सब्जी चाहिए तो बदले में इतने गेहूँ दे दो
आपको नमक चाहिए तो बदले में इतनी सब्जी दे दो
बार्टर सिस्टम से ही कारोबार चलता था
धीरेधीरे करके मुद्रा आने लगी
कॉइन आने लगे सिक्के आने लगे नोट आने लगे
लेकिन अब वक्त बदल चुका है
पूरी दुनिया कैशलेस सोसाइटी की तरफ़ आगे बढ़ रही है
इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजिकल व्यवस्था के द्वारा हम रुपये पा भी सकते हैं रुपये दे भी सकते हैं
चीज़ खरीद भी सकते हैं बिल चुकता भी कर सकते हैं
और इससे ज़ेब में से कभी बटुए की चोरी होने का तो सवाल ही नहीं उठेगा
हिसाब रखने की भी चिंता नहीं रहेगी ऑटोमेटिक हिसाब रहेगा
शुरुआत थोड़ी कठिन लगेगी लेकिन एक बार आदत लगेगी तो ये व्यवस्था सरल हो जायेगी
और ये संभावना इसलिए है कि हमने इन दिनों जो प्रधानमंत्री जन धन योजना का अभियान चलाया देश के क़रीबक़रीब सभी परिवारों के बैंक खाते खुल गए
दूसरी तरफ आधार नंबर भी मिल गया और मोबाइल तो क़रीबक़रीब हिन्दुस्तान के हर हिन्दुस्तानी के हाथ में पहुँच गया है
तो जनधन आधार और मोबाइल जाम jaएम इसका तालमेल करते हुए हम इस कैशलेस सोसाइटी की तरफ़ आगे बढ़ सकते हैं
आपने देखा होगा कि जनधन अकाउंट के साथ रूपे कार्ड दिया गया है
आने वाले दिनों में ये कार्ड क्रेडिट और डेबिट दोनों की दृष्टि से काम आने वाला है
और आजकल तो एक बहुत छोटा सा इंस्ट्रूमेंट भी आ गया है जिसको कहते हैं पॉइंट ओएफ साले poएस
उसकी मदद से आप अपना आधार नंबर हो रूपे कार्ड हो आप किसी को भी पैसा चुकता करना है तो उससे दे सकते हैं
ज़ेब में से रुपये निकालने की गिनने की जरूरत ही नहीं है
साथ ले करके घूमने की जरुरत ही नहीं है
भारत सरकार ने जो कुछ इनिशिएटिव लिए हैं उसमें एक पोस के द्वारा पेमेंट कैसे हो पैसे कैसे लिए जाएँ
दूसरा काम हमने शुरू किया है बैंक ओन मोबाइल यूनिवर्सल पेमेंट इंटरफेस बैंकिंग ट्रांजैक्शन उपी
तरीक़े को बदल कर रख देगा
आपके मोबाइल फोन के द्वारा मोनी ट्रांजैक्शन करना बहुत ही आसान हो जाएगा और ख़ुशी की बात है कि npcआई
और बैंक इस प्लैटफार्म को मोबाइल अप्प के ज़रिये लॉन्च करने के लिए काम कर रहे हैं और अगर ये हुआ तो शायद आपको रूपे कार्ड को साथ रखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगीI देश में क़रीबक़रीब सवालाख बैंकिंग कॉरेस्पोंडेंट्स के रूप में नौजवानों को भर्ती किया गया है
एक प्रकार से बैंक आपके द्वार पर उस दिशा में काम किया है
पोस्ट आफिस को भी बैंकिंग सेवाओं के लिए सजग कर दिया गया है
इन व्यवस्थाओं का अगर हम उपयोग करना सीख लेंगे और आदत डालेंगे तो फिर हमें ये करेंसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी नोटों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी पैसों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कारोबार अपनेआप चलेगा और उसके कारण एक ट्रांसपेरेंसी आएगी
दोनंबरी कारोबार बंद हो जाएँगे
काले धन का तो प्रभाव ही कम होता जाएगा तो मैं देशवासियों से आग्रह करता हूँ कि हम शुरू तो करें
देखिए एक बार शुरू करेंगे तो बहुत सरलता से हम आगे बढ़ेंगे
आज से बीस साल पहले किसने सोचा था कि इतने सारे मोबाइल हमारे हर हाथ में होंगे
धीरेधीरे आदत हो गई अब तो उसके बिना रह नहीं सकते
हो सकता है ये कैशलेस सोसाइटी भी वैसा ही रूप धारण कर ले लेकिन कम समय में होगा तो ज्यादा अच्छा होगा
मेरे प्यारे देशवासियों जब भी ओलम्पिक के खेल आते हैं और जब खेल शुरू हो जाते हैं तो फिर हम सर पटक के बैठते हैं हम गोल्ड मेडल में कितने पीछे रह गए सिल्वर मिला के नहीं मिला ब्रोंज से चलाए न चलाए ये रहता है
ये बात सही है कि खेलकूद में हमारे सामने चुनौतियाँ बहुत हैं लेकिन देश में एक माहौल बनना चाहिए
रियो ओलम्पिक के लिए जाने वाले हमारे खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने का उनका हौसला बुलंद करने का हर किसी ने अपनेअपने तरीक़े से
कोई गीत लिखे कोई कार्टून बनाए कोई शुभकामनायें सन्देश दे कोई किसी गेम को प्रोत्साहित करे लेकिन पूरे देश को हमारे इन खिलाड़ियों के प्रति एक बड़ा ही सकारात्मक माहौल बनाना चाहिए
परिणाम जो आएगा आएगा
खेल है खेल है जीत भी होती है हार भी होती है मेडल आते भी हैं नहीं भी आते हैं लेकिन हौसला बुलंद होना चाहिए और ये जब मैं बात करता हूँ तब मैं हमारे खेल मंत्री श्रीमान सर्बानन्द सोनोवाल को भी एक काम के लिए मुझे मन को छू गया तो मैं आपको कहना चाहता हूँ
हम सब लोग गत सप्ताह चुनाव के नतीजे क्या आएँगे असम में क्या पत्र परिणाम आएँगे उसी में लगे थे और श्रीमान सर्बानन्द जी तो स्वयं असम के चुनाव का नेतृत्व कर रहे थे मुख्यमंत्री के उम्मीदवार थे लेकिन वो भारत सरकार के मंत्री भी थे और मुझे ये जब जानकारी मिली तो बड़ी ख़ुशी हुई कि वो असम चुनाव के रिजल्ट के पहले किसी को बताए बिना पटियाला पहुँच गए पंजाब
आप सब को मालूम होगा नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ओएफ स्पोर्ट्स निस जहाँ पर ओलम्पिक में जाने वाले हमारे खिलाड़ियों की ट्रेनिंग होती है वो सब वही हैं
वे अचानक वहां पहुँच गए खिलाड़ियों के लिए भी सरप्राइज था और खेल जगत के लिए भी सरप्राइज था कि कोई मंत्री इस प्रकार से इतनी चिंता करे
खिलाड़ियों की क्या व्यवस्था है खाने की व्यवस्था क्या है आवश्यकता के अनुसार न्यूट्रीशन फूड मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है उनकी बॉडी के लिए जो आवश्यक ट्रेनर हैं वो ट्रेनर हैं कि नहीं हैं
ट्रेनिंग के सारे मशीन्स ठीक चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं
सारी बातें उन्होंने बारीकी से देखीं
एकएक खिलाड़ी के कमरे को जाकर के देखा
खिलाड़ियों से विस्तार से बातचीत की मैनेजमेंट से बात की ट्रेनर से बात की खुद ने सब खिलाड़ियों के साथ खाना भी खाया
चुनाव नतीजे आने वाले हों मुख्यमंत्री के नाते नये दायित्व की संभावना हो लेकिन फिर भी अगर मेरा एक साथी खेल मंत्री के रूप में इस काम की इतनी चिंता करे तो मुझे आनंद होता है
और मुझे विश्वास है हम सब इसी प्रकार से खेल के महत्व को समझें
खेल जगत के लोगों को प्रोत्साहित करें हमारे खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करें
ये अपनेआप में बहुत बड़ी ताक़त बन जाती है जी जब खिलाड़ी को लगता है कि सवासौ करोड़ देशवासी उसके साथ खड़े हैं तो उसका हौसला बुलंद हो जाता है
पिछली बार मैंने फिफा Under17 वर्ल्ड कप के लिए बातें की थी और मुझे जो सुझाव आये देश भर से और इन दिनों मैंने देखा है कि फुटबॉल का एक माहौल पूरे देश में नज़र आने लगा है
कई लोग इनिशिएटिव लेकर अपनीअपनी टीमें बना रहे हैं
नरेंद्र मोदी मोबाइल अप्प पर मुझे हज़ारों सुझाव मिले हैं
हो सकता है बहुत लोग खेलते नहीं होंगे लेकिन देश के हज़ारोंलाखों नौजवानों की खेल में इतनी रूचि है ये अपनेआप में मेरे लिए सुखद अनुभव था
क्रिकेट और भारत का लगाव तो हम जानते हैं लेकिन मैंने देखा फुटबॉल में भी इतना लगाव
ये अपनेआप में बड़ा ही एक सुखद भविष्य का संकेत देता है
तो रियो ओलम्पिक के लिए पसंदगी के पात्र हमारे सभी खिलाड़ियों के प्रति हम लोग एक उमंग और उत्साह का माहौल बनाएँ आने वाले दिनों में
हर चीज़ को जीत और हार की कसौटी से न कसा जाये
स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के साथ भारत दुनिया में अपनी पहचान बनाए
मैं देशवासियों से अपील करता हूँ कि हमारे खेल जगत से जुड़े साथियों के प्रति उत्साह और उमंग का माहौल बनाने में हम भी कुछ करें
पिछले आठदस दिन से कहींनकहीं से नयेनये रिजल्ट आ रहे हैंI मैं चुनाव के रिजल्ट की बात नहीं कर रहा हूँ
मैं उन विद्यार्थियों की बात कर रहा हूँ जिन्होंने साल भर कड़ी मेहनत की एक्साम दी 10th के 12th के एक के बाद एक रिजल्ट आना शुरू हुआ है
ये तो साफ़ हो गया है कि हमारी बेटियाँ पराक्रम दिखा रही हैं
ख़ुशी की बात है
इन परिणामों में जो सफल हुए हैं उनको मेरी शुभकामना है बधाई है
जो सफल नहीं हो पाए हैं उनको मैं फिर से एक बार कहना चाहूँगा कि ज़िंदगी में करने के लिए बहुतकुछ होता है
अगर हमारी इच्छा के मुताबिक परिणाम नहीं आया है तो कोई ज़िंदगी अटक नहीं जाती है
विश्वास से जीना चाहिए विश्वास से आगे बढ़ना चाहिए
लेकिन एक बड़े नए प्रकार का मेरे सामने प्रश्न आया है और मैंने वैसे इस विषय में कभी सोचा नहीं था
लेकिन मेरे माइगोव पर एक इमेल आया तो मेरा ध्यान गया
मध्य प्रदेश के कोई एमआर
गौरव हैं गौरव पटेल उन्होंने एक बड़ी अपनी कठिनाई मेरे सामने प्रस्तुत की है
गौरव पटेल कह रहे हैं कि mप
के बोर्ड एक्साम में मुझे 8933 परसेंट मिले हैं
तो ये पढ़ के मुझे तो लगा वाह क्या ख़ुशी की बात है लेकिन आगे वो अपने दुःख की कथा कह रहे हैं
गौरव पटेल कह रहे हैं कि साहब 8933 परसेंट मार्क्स लेकर जब मैं घर पहुँचा तो मैं सोच रहा था कि चारों तरफ़ से मुझे बधाइयाँ मिलेंगी अभिनन्दन होगा लेकिन मैं हैरान था घर में हर किसी ने मुझे यही कहा अरे यार चार मार्क्स ज्यादा आते तेरा 90 परसेंट हो जाता
यानि मेरे परिवार और मेरे मित्र मेरे टीचर कोई भी मेरे 8933 परसेंट मार्क्स से प्रसन्न नहीं था
हर कोई मुझे कह रहा था यार चार मार्क्स के लिए तुम्हारा 90 परसेंट रह गया
अब मैं इस बात को समझ नहीं पा रहा हूँ कि ऐसी स्थिति को कैसे मैं हैंडल करूँ
क्या ज़िंदगी में यही सब कुछ है क्या क्या मैंने जो किया वो अच्छा नहीं था क्या क्या मैं भी कुछ कम पड़ गया क्या पता नहीं मेरे मन पर एक बोझ सा अनुभव होता है
गौरव आपकी चिट्ठी को मैंने बहुत ध्यान से पढ़ा है और मुझे लगता है शायद ये वेदना आपकी ही नहीं आपके जैसे लाखोंकरोड़ो विद्यार्थियों की होगी क्योंकि एक ऐसा माहौल बन गया है कि जो हुआ है उसके प्रति संतोष के बजाय उसमें से असंतोष खोजना ये नकारात्मकता का दूसरा रूप है
हर चीज़ में से असंतोष खोजने से समाज को संतोष की दिशा में हम कभी नहीं ले जा सकते हैं
अच्छा होता आपके परिजनों ने आपके साथियों ने मित्रों ने आपके 8933 परसेंट को सराहा होता तो आपको अपनेआप ही ज्यादा कुछ करने का मन कर जाता
मैं अभिभावकों से आसपास के लोगों से ये आग्रह करता हूँ कि आपके बच्चे जो रिजल्ट लेकर आए हैं उसको स्वीकार कीजिए स्वागत कीजिए संतोष व्यक्त कीजिए और उसको आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित कीजिए वरना हो सकता है वो दिन ये भी आएगा कि आपको 100 परसेंट आने के बाद आप कहें कि भई 100 आया लेकिन फिर भी तुम कुछ ऐसा करते तो अच्छा होते तो हर चीज़ की कुछ तो मर्यादा रहनी ही चाहिए
मुझे जोधपुर से संतोष गिरि गोस्वामी उन्होंने भी लिखा है करीबकरीब इसी प्रकार से लिखा है
वे कहते हैं कि मेरे आसपास के लोग हमारे परिणाम को स्वीकार ही नही कर रहे हैं
वो तो कहते हैं कि कुछ और अच्छा कर लेते कुछ और अच्छा कर लेते
मुझे कविता पूरी याद नहीं है लेकिन बहुत पहले मैंने पढी थी किसी कवि ने लिखी थी कि ज़िन्दगी के कैनवास पर मैंने वेदना का चित्र बनाया
और जब उसकी प्रदर्शनी थी लोग आए हर किसी ने कहा टचअप की ज़रूरत है कोई कहता था कि नीले की बजाए पीला होता तो अच्छा होता कोई कहता था ये रेखा यहाँ के बजाये उधर होती तो अच्छा होता
काश मेरी इस वेदना के चित्र पर किसी एकाध दर्शक ने भी तो आंसू बहाए होते
ये कविता के शब्द यही थे ऐसा मुझे अब याद नहीं रहा लेकिन बहुत पहले की कविता है तो लेकिन भाव यही था
उस चित्र में से कोई वेदना नहीं समझ पाया हर कोई टचअप की बात कर रहा था
संतोष गिरि जी आप की चिंता भी वैसी है जैसी गौरव की है और आप जैसे करोड़ों विद्यार्थियों की होगी
लोगों की अपेक्षाओं को पूर्ण करने के लिए आप पर बोझ बनता है
मैं तो आप से इतना ही कहूँगा कि ऐसी स्थिति में आप अपना संतुलन मत खोइए
हर कोई अपेक्षायें व्यक्त करता है सुनते रहिये लेकिन अपनी बात पर डटे रहिये और कुछ अधिक अच्छा करने का प्रयास भी करते रहिये
लेकिन जो मिला है उस पर संतोष नहीं करोगे तो फिर नयी इमारत कभी नहीं बना पाओगेI सफलता की मजबूत नींव ही बड़ी सफलता का आधार बनती है
सफलता में से भी पैदा हुआ असंतोष सफलता की सीढ़ी नही बना पाता वो असफलता की गारंटी बन जाता है
और इसलिए मैं आप से आग्रह करूँगा कि जितनी सफलता मिली है उस सफलता को गुनगुनाओ उसी में से नयी सफलता की संभावनायें पैदा होंगी
लेकिन ये बात मैं अड़ोसपड़ोस और माँबाप और साथियों से ज्यादा कहना चाहता हूँ कि आप अपने बच्चों के साथ कृपा करके आपकी अपेक्षायें उन पर मत थोपिए
और दोस्तो क्या कभीकभी ज़िन्दगी में असफल हुए तो क्या वो ज़िन्दगी ठहर जाती है क्या जो कभी एक्साम में अच्छे मार्क्स नहीं ला सकता वो स्पोर्ट्स में बहुत आगे निकल जाता है संगीत में आगे निकल जाता है कलाकारीगरी में आगे निकल जाता है व्यापार में आगे निकल जाता है
ईश्वर ने हर किसी को कोईनाकोई तो अद्भुत विधा दी ही होती है
बस आप के अपने भीतर की शक्ति को पहचानिए उस पर बल दीजिए आप आगे निकल जाएँगे
और ये जीवन में हर जगह पर होता है
आप ने संतूर नाम के वाद्य को सुना होगा
एक ज़माना था संतूर वाद्य कश्मीर की घाटी मे फोल्क म्यूजिक के साथ जुड़ा हुआ था
लेकिन एक पंडित शिव कुमार थे जिन्होंने उसको हाथ लगाया और आज दुनिया का एक महत्वपूर्ण वाद्य बना दिया
शहनाई शहनाई हमारे संगीत के पूरे क्षेत्र में सीमित जगह पर था
ज्यादातर राजामहाराजाओं के जो दरबार हुआ करते थे उसके गेट पर उसका स्थान रहता था
लेकिन जब उस्ताद बिस्मिल्ला खां ने जब शहनाई को हाथ लगाया तो आज विश्व का उत्तम सा वाद्य बन गया उसकी एक पहचान बन गई है
और इसलिए आप के पास क्या है कैसा है इसकी चिंता छोड़िए उस पर आप जुट जाइए जुट जाइए
परिणाम मिलेगा ही मिलेगा
मेरे प्यारे देशवासियो कभीकभी मैं देखता हूँ कि हमारे ग़रीब परिवारों का भी आरोग्य को लेकर के जो खर्च होता है वो जिन्दगी की पटरी को असंतुलित कर देता है
और ये सही है कि बीमार न होने का खर्चा बहुत कम होता है लेकिन बीमार होने के बाद स्वस्थ होने का खर्चा बहुत ज्यादा होता है
हम ऐसी जिन्दगी क्यों न जियें ताकि बीमारी आये ही नहीं परिवार पर आर्थिक बोझ हो ही नहीं
एक तो स्वच्छता बीमारी से बचाने का सबसे बड़ा आधार है
ग़रीब की सबसे बड़ी सेवा अगर कोई कर सकता है तो स्वच्छता कर सकती है
और दूसरा जिसके लिए मैं लगातार आग्रह करता हूँ वो है योग
कुछ लोग उसको योगा भी कहते हैं
21 जून अन्तर्राष्ट्रीय योग दिवस है
पूरे विश्व मे योग के प्रति एक आकर्षण भी है श्रद्धा भी है और विश्व ने इसको स्वीकार किया है
हमारे पूर्वजों की हमें दी हुई एक अनमोल भेंट है जो हमने विश्व को दी है
तनाव से ग्रस्त विश्व को संतुलित जीवन जीने की ताकत योग देता है
प्रिवेंशन इस बेटर थान क्यूर
योग से जुड़े हुये व्यक्ति के जीवन में स्वस्थ रहना संतुलित रहना मज़बूत इच्छाशक्ति के धनी होना अप्रतिम आत्मविश्वास से भरा जीवन होना हर काम में एकाग्रता का होना ये सहज उपलब्धियां होती हैं
21 जून योग दिवस ये सिर्फ एक इवेंट नहीं है इसका व्याप बढ़े हर व्यक्ति के जीवन में उसका स्थान बने हर व्यक्ति अपनी दिनचर्या में 20 मिनट 25 मिनट 30 मिनट योग के लिए खपाए
और इसके लिए 21 जून योग दिवस हमें प्रेरणा देता है
और कभीकभी सामूहिक वातावरण व्यक्ति के जीवन में बदलाव लाने का कारण बनता है
मैं आशा करता हूँ 21 जून आप जहाँ भी रहते हों आपके इनिशिएटिव के लिए अभी एक महीना है
आप भारत सरकार की वेबसाइट पर जाओगे तो योग का जो इस बार का सिलेबस है कौनकौन से आसन करने हैं किस प्रकार से करने हैं इसका पूरा वर्णन है उसमें उसको देखिये आपके गाँव में करवाइए आपके मोहल्ले में करवाइए आपके शहर में करवाइए आपके स्कूल में इंस्टीट्यूशन में एवेन आफिसों में भी
अभी से एक महीना शुरू कर दीजिये देखिये आप 21 जून को भागीदार बन जाएँगे
मैंने कई बार पढ़ा है कि कई आफिसों में रेग्युलरली सुबह मिलते ही योग और प्राणायाम सामूहिक होता है तो पूरे आफिस की एफिशिएंसी इतनी बढ़ जाती है पूरे आफिस का कल्चर बदल जाता है एनवायर्नमेंट बदल जाता है
क्या 21 जून का उपयोग हम अपने जीवन में योग लाने के लिए कर सकते हैं अपने समाज जीवन में योग लाने के लिए कर सकते हैं अपने आसपास के परिसर में योग लाने के लिए कर सकते हैं मैं इस बार चंडीगढ़ के कार्यक्रम में शरीक होने के लिए जाने वाला हूँ 21 जून को चंडीगढ़ के लोगों के साथ मैं योग करने वाला हूँ
आप भी उस दिन अवश्य जुडें पूरा विश्व योग करने वाला है
आप कहीं पीछे न रह जाएँ ये मेरा आग्रह है
आप का स्वस्थ रहना भारत को स्वस्थ बनाने के लिए बहुत आवश्यक है
मेरे प्यारे देशवासियो मन की बात के द्वारा आपसे मैं लगातार जुड़ता हूँ
मैंने बहुत पहले आप को एक मोबाइल नंबर दिया था
उस पर मिस्ड कॉल करके आप मन की बात सुन सकते थे लेकिन अब उसको बहुत आसान कर दिया है
अब मन की बात सुनने के लिए अब सिर्फ 4 ही अंक उसके द्वारा मिस्ड कॉल करके मन की बात सुन सकते हैं
वो चार आँकड़ों का नंबर है उन्नीस सौ बाईस19221922 इस नंबर पर मिस्ड कॉल करने से आप जब चाहें जहाँ चाहें जिस भाषा में चाहें मन की बात सुन सकते हैं
प्यारे देशवासियो आप सब को फिर से नमस्कार
मेरी पानी की बात मत भूलना
याद रहेगी न ठीक है
धन्यवाद